सामने एक रोड बना हुआ है जो भूरे रंग का है और तीन खंभे गड़े हुए हैं सामने एक नदी गई हुई है बगल में कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो हरे-भरे पेड़ हैं।

सामने गैरेज काले रंग का गाड़ी खड़ा हुआ है सामने भी एक गाड़ी खड़ा हुआ है उसके सामने एक आदमी पीले रंग का शर्ट पहने हुए खड़ा है।

बगल में ऐ बड़ी-सी सीढ़ी दी गई हैं ऊपर चगने के लिए एक बड़ा-सा छड़ हैं छोटा-सा गार्डन हैं।

सामने बड़ा-सा बिल्डिंग है जो भूरे रंग की है और छोटे-छोटे रोशेदान लगे हुए है रोशनदान में ए कांच लगी हुई है सामने एक छोटा-सा ग्राउंड है जो कुछ लोग खड़े हुए है अ अंदर जा रहे है।

के। एक खिड़की लगाई गई हैं और तीन आदमी खड़े हुए हैं। अगल-बगल गुलदस्ते रखे हुए हैं। जो हरी हरी पतिया हैं और सामने से एक आदमी जा रहा हैं। सामने पोस्टर भी लगा हुआ हैं। दो गाड़ी खड़ी हैं जो लाल रंग की हैं और भवन के अंदर एक आदमी जा रहा हैं।

सामने एक बड़ा-सा भवन है जो सफेद रंग का और लाल कलर की बॉडर की गयी ऊपर के साइड पे एक लाइट लगाई है एक सामने दो बड़ी खिड़की है।

सामने एक बड़ा-सा भवन हैं। जो सफेद रंग का बाहर एक कार खड़ी हैं सफेद रंग की सामने एक छोटा-सा बगीचा जिसपे फूल लगे हुए हैं। लाल रंग की---

उस छत के ऊपर कुछ मूर्ति बनाई गई है मदिर के बाहर एक छोटा सा ठेला है जो पानी लगा हुआ है एक साइकिल भी खड़ी है बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

और सामने एक साइड पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और जो छत का रंग भूरा हैं और दीवाल की रंग नीली हैं।

एक बड़ा-सा ग्राउंड हैं जो दो बकरी चारा-आ खा रहे हैं सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो सफेद रंग का है और बगल मे एक बिल्डिंग बन रही हैं।

सामने एक छोटा-सा डोपरी हैं जो बास का बम्बू बना हुआ हैं सामने एक बोर्ड लगाया गया हैं नीले रंग की और नीचे बोहोत सारे घास उगे हुए हैं जो हरे रंग की हैं सामने एक टैंक रखा हुआ हैं।